दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मौखिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक कमांड्स का अध्ययन करेंगे
मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही हूँ
हम यह मानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत कैसे करना है ये आपको पता है
अगर इसके बारे में जानना है तो httpwwwspoken tutorialorg वेबसाइट पर एक दूसरे ट्यूटोरियल में मौजूद है
इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कमांड्स क्या हैं और कमांड व्याख्याकार या इंटरप्रेटर क्या है
फिर हम सीखेंगे कि मैन कमांड के इस्तेमाल से लिनक्स में हेल्प कैसे पता करें
अब पहला सवाल है कि कमांड्स क्या हैं160
सरल शब्दों में कहें तो लिनक्स कमांड्स ऐसे शब्द हैं जो दिए जाने पर कुछ एक्शन या कार्य करते हैं
लिनक्स कमांड्स शायद ही कभी चार से ज्यादा अक्षर के होंगे जैसे कि एलएस व्हो ps
कमांड्स लोअर केस में होती हैं तथा वे केस सेंसिटिव हैं
चलिए एक उदाहरण देखते हैं
एप्लीकेशन मेन्यू में जाएँ
ऐक्सेसरीज़ को चुनें और फिर उपलब्ध ऑप्शन से टर्मिनल पर क्लिक करें
अब हम एक प्रोम्प्ट देख सकते हैं और ठीक उसके साथ एक कर्सर भी देख सकते हैं
यहीं पर हमें कमांड टाइप करनी है
व्हो टाइप करें और एंटर प्रेस करें
हम उन यूज़र्स के नाम देख सकते हैं जो लॉग्ड इन हैंअसल में हमने अभी एक कमांड को एक्सक्यूट यानि निष्पादित किया है जो है व्हो जो कि बताती है कि कौन कौन सिस्टम में लॉग्ड इन हैं
लेकिन ये कुछ अक्षरों की कौन सी चीज़ या एंटिटी है जो इन कमांड्स को एक्शन में बदलती है
ये कमांड इंटरप्रेटर का कार्य है जिसे शेल भी कहते हैं
हम शेल को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम जो हमारे और लिनक्स सिस्टम के बीच इंटरफेस का तरह काम करता है
और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स एंटर करने और उन्हें एक्सक्यूट करने की अनुमति देता है
लिनक्स में मल्टिपल यानि विविध शेल्स इंस्टाल करना संभव है और जहाँ उपयोगकर्ता अपने पसंद से उन्हें चुन सकते हैं
लिनक्स पर मानक यानि स्टैन्डर्ड शेल जो हमेशा binsh के रूप में रहते हैं उसे बैश कहते हैं जो ग्नू सूट ऑफ टूल्स से है
कमांड्स जो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे वह काफी सामान्य हैं और जो अधिकांश लिनक्स शेल्स पर चलती हैं
हम इस ट्यूटोरियल में प्रदर्शन के लिए बैश का प्रयोग करेंगे
वो इसलिए क्योंकि यह एक लोकप्रिय शेल है और लगभग सभी यूनिक्स के लिए वहनीय यानि पोर्टेबल है
दूसरे शेल्स हैं बोर्न शेल जो कि मौलिक यूनिक्स शेल है सी शेल और कोर्न शेल
कौन सा शेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह देखने के लिए
टर्मिनल विंडो पर जाइये और यह कमांड टाइप कीजिये एचो स्पेस डॉलर शेल कैपिटल में और एंटर प्रेस करें
सामान्य रूप से आउटपुट है binbash जो हमें बैश शेल देता है
काफी तरीके हैं जिससे हम अलग अलग शेल्स को सक्रिय कर सकते हैं जो कि एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
कमांड्स वास्तव में फाइल्स हैं जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो अक्सर सी में लिखी जाती हैं
यह फाइल्स डाइरेक्टरीज़ में समाहित होती हैं
कमांड का संचय कहाँ हुआ है इसका पता करने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग कर सकते हैं
कमांड प्रोंप्ट पर टाइप करें type स्पेस पीएस और एंटर प्रेस करें
यह बताता है कि पीएस कमांड असल में स्लैश बिन डाइरेक्टरी में संग्रहित एक फाइल है
जब हम कमांड प्रोम्प्ट पर कमांड देते हैं तब शेल डाइरेक्टरीज़ की सूची में से कमांड के नाम से मिलती हुई फाइल को ढूँढता है
यदि इसका पता चलता है तो उस फाइल का समरूप प्रोग्राम निष्पादित होता है
यदि नहीं तो कमांड नॉट फाउन्ड ऐसा एरर देगा
खोजे गए डाइरेक्टरीज़ की सूची पाथ वेरीएबल द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गयी है जो कि हम बाद में देखेंगे
अभी के लिए यदि हमें इस लिस्ट को देखना है तो केवल एको स्पेस डॉलर पाथ कमांड टाइप करें
बड़े अक्षर में और एंटर दबायें
जब कमांड्स की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए
लिनक्स कमांड्स दो प्रकार की हैं160 एक्सटर्नल कमांड्स तथा इंटरनल कमांड्स
एक्सटर्नल कमांड्स वह है जो अलग से फाइल्स या प्रोग्राम्स के रूप में मौजूद है
लिनक्स में अधिकांश कमांड्स इसी प्रकार की होती हैं
लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनका कार्यान्वयन शेल में ही लिखा जाता है तथा वे अलग फाइल्स के रूप में नहीं होती
ये इंटरनल कमांड्स होती हैं
एको कमांड जिसे हम बाद में देखेंगे वास्तव में एक इंटरनल कमांड है
टर्मिनल पर जाएँ और कमांड टाइप करें
टाइप स्पेस एचो और एंटर दबायें
आउटपुट एको को शेल बुलेटिन के रूप में दिखाता है
अतः फाइलनेम देने के बजाय यह बताता है कि एको कमांड का कार्यान्वयन शेल के लिए इंटरनल है
इसलिए इसे इंटरनल कमांड कहते हैं
एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वह है कमांड्स की संरचना
कमांड्स एक या एक से अधिक शब्द के हो सकते हैं जो कि ह्वाइट स्पेसेस द्वारा अलग किए होते हैं
दूसरे केस में पहला शब्द कमांड का वास्तविक नाम है जबकि अन्य शब्द तर्क हैं
आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शंस या एक्स्प्रेशंस या फाइल हो सकते हैं
स्पष्ट किए ऑप्शन के आधार पर एक कमांड अलग अलग कार्य कर सकती है
साधारणतः उनके पहले एक सिंगल या डबल माइनस चिन्ह होता है जिसे शोर्ट या लॉंग ऑप्शन कहते हैं
टर्मिनल विंडो पर जाएँ और कमांड्स टाइप करें और उनके आउटपुट्स देखें
टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें
उसके बाद एलएस टाइप करें और एंटर दबायें
फिर से क्लियर टाइप करें और एंटर दबायें
एलएस स्पेस माइनस आ टाइप करें और एंटर दबायें
टर्मिनल विंडो को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें
अबls स्पेस माइनस माइनस अल्ल टाइप करें और एंटर दबायें
फिर से टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइप करें
अब एलएस स्पेस माइनस डी टाइप करें और एंटर दबायें
इस समय यह समझना काफी है कि कैसे ऑप्शंस में बदलाव होने पर कमांड्स का बर्ताव बदलता है
लिनक्स में हमारे पास काफी सारी कमांड्स हैं
हर एक में कई सारे अलग ऑप्शंस हैं
कमांड्स को एक साथ संयुक्त भी कर सकते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे
तो इतनी सारी चीज़ें हम दिमाग में कैसे रखें
सच में आपको इसकी ज़रूरत नहीं
क्योंकि लिनक्स में उत्कृष्ट ऑनलाइन हेल्प या मदद की सुविधा उपलब्ध है
मैन कमांड सिस्टम पर सभी उपलब्ध कमांड के बारे में डाक्यूमेन्टेशन या अभिलेख प्रदान करता है
उदाहरण के लिए एलएस कमांड के बारे में जानने के लिए आपको टर्मिनल पर जाना पड़ेगा
एलएस तर्क के साथ मैन कमांड टाइप करें जो है टाइप मन स्पेस एलएस और एंटर दबायें
बाहर आने के लिए क्यू दबायें
मैन सिस्टम का मैन्यूअल पेजर है
प्रत्येक तर्क जो मैन को दिया जाता है वह साधारणतः एक प्रोग्राम का नाम यूटीलीटी यानि उपयोगिता या फंक्शन होता है
इन तर्कों से जुड़े हुए मैन्यूअल पेज को फिर ढूँढकर दर्शाया जाता है
यदि एक सेक्शन प्रदान किया है यह मैन को मैन्यूअल में से उसी सेक्शन की ओर देखने के लिए कहेगा
डिफॉल्ट एक्शन यह है कि सारे उपलब्ध सेक्शंस में खोजे और वह भी एक पूर्वनिर्धारित क्रम में और पाए गए पेज में से सिर्फ पहला पेज दिखाए भले ही वह पेज कई सेक्शंस में मौजूद है
आप मैन कमांड के बारे में ही अधिक जानने के लिए मैंन कमांड का उपयोग कर सकते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और मन स्पेस मन टाइप करें और एंटर दबायें
इससे बाहर आने के लिए क्यू दबायें
मैन कमांड में कई ऑप्शन हैं
यहाँ मैं आपको ज्यादा उपयोगी वालों के बारे में बताऊँगी
कभी कभी हमें पता होता है जो हम करना चाहते हैं लेकिन सही कमांड नहीं पता होती
तब हम क्या करे
मैन k ऑप्शन प्रदान करता है जो एक कीवर्ड को लेता है और फिर कमांड्स की सूची और उनका संक्षिप्त उद्देश्य बताता है
उदाहरण के लिए डाइरेक्टरी बनाने के लिए हमें सही कमांड का पता ना हो
तो हम कमांड प्रोंप्ट पर जा सकते हैं और मन स्पेस माइनस क स्पेस डायरेक्टरीज टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम प्रत्येक कमांड्स खोज सकते हैं ताकि देख पाएँ कि असल में हमें क्या चाहिए
यही चीज़ एप्रोपोस कमांड का उपयोग कर भी प्राप्त कर सकते हैं
कमांड प्रोंप्ट पर एप्रोपोस स्पेस डायरेक्टरीज टाइप करें और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबायें
कभी कभी हमें अधिक विवरण की ज़रूरत नहीं होती
हमें सिर्फ ये जानना होता है कि कमांड क्या करती है
उस स्थिति में हम व्हाटिस कमांड या मन -f कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं
दोनों ही कमांड के बारे में एक लाइन का विवरण देते हैं
टर्मिनल पर जाएँ टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लीयर टाइप करें
अब व्हाटिस स्पेस एलएस टाइप करें और एंटर दबायें
कुछ कमांड्स में कई ऑप्शंस होते हैं
हो सकता है कि एक कमांड के विभिन्न ऑप्शंस की सूची हम प्राप्त करना चाहें
तब हम हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं
कमांड प्रोंप्ट पर जाएँ और एलएस स्पेस माइनस माइनस हेल्प टाइप करें और एंटर दबायें
मैं ऊपर स्क्रोल करुँगी ताकि आप इस मैन्यूअल पेज पर सारे ऑप्शंस देख सकें
लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल के इस भाग के लिए बस इतना ही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
अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ